c और c ++ में arrays arrays पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे
array क्या है
array की घोषणा करना
array का इनीशिलाइजेशन
array पर कुछ उदाहरण
हम कुछ सामान्य errors और उनके समाधान भी देखेंगे
इस tutorial को record करने के लिए मैं
उबंटु operating system version 1104
gcc और g ++ compiler version 461 का उपयोग कर रहा हूँ
array के परिचय के साथ शुरू करते हैं
array समान datatype के elements या data का संग्रह है
array index 0 से शुरू होता है
पहला element index 0 में संचित है
यहाँ तीन प्रकार के arrays हैं :
single dimensional array single डाइमेंशनल array
two dimensional array two डाइमेंशनल array और
multidimensional array multiडाइमेंशनल array
इस tutorial में हम singleडाइमेंशनल array पर चर्चा करेंगे
देखते हैं कि single डाइमेंशनल array कैसे घोषित करें
इसके लिए syntax है:
datatype name of the array array का name और size
उदाहरण यहाँ हमने घोषित किया है एक इन्टिजर array star जिसमें 5 elements हैं
array index star 0 से star 4 तक शुरू होगा
हमने array की घोषणा देखी
अब हम array का इनीशिलाइज़ेशन देखेंगे
इसके लिए syntax है :
datatype name of the array size is equal to elements datatype array का name आकार size elements के बराबर है
उदाहरण यहाँ हमने size 3 के साथ एक इन्टिजर array star को घोषित किया है array के elements हैं 12 और 3
यहाँ index star 0 से star 2 तक शुरू होगा
अब उदाहरणों पर आते हैं
मैंने editor पर पहले ही program टाइप किया है
अब मैं इसे खोलता हूँ
कृपया ध्यान दें कि हमारी फ़ाइल का name array c है
इस program में sum array में संचित elements के योग की गणना करेंगे
अब मैं code समझाता हूँ
यह हमारी header फ़ाइल है
यह हमारा main function है
यहाँ हमने size 3 के साथ एक array star array star को घोषित और इनिशीलाइज किया है
array के elements हैं 45 और 6
फिर हमने एक इन्टिजर variable sum घोषित किया है
यहाँ हमने array के elements जोड़े हैं और परिणाम को sum में संचित किया है
ध्यान दें कि 4 index 0 में संचित होगा 5 index 1 में संचित होगा और 6 index 2 में संचित होगा
फिर sum sum print करेंगे
और यह हमारा return statement है
अब save पर click करें
program निष्पादित करें
कृपया अपने keyboard पर एक साथ ctrl alt और t कीज दबाकर terminal window खोलें
कंपाइल के लिए type करें gcc space array dot c space hypen o space array और enter दबाएं
निष्पादित करने के लिए type करें dot slash array enter दबाएं
यहाँ output प्रदर्शित होता है
the sum is 15
अब कुछ सामान्य errors देखते हैं जो आ सकती हैं
अपने program पर आएँ
मानिए कि यहाँ line संख्या 4 पर हम curly brackets भूल गए
save पर click करें देखें क्या होता है
terminal पर वापस आएँ
पहले की तरह compile करें
हम एक error देखते हैं
invalid initializer and expected identifier or bracket before numeric constant
यह इसलिए क्योंकि arrays curly brackets में इनिशलाइज करने आवश्यक हैं
अपने program पर आएँ error fix करें
यहाँ line संख्या 4 पर curly brackets type करें
अब save पर click करें
निष्पादित करें terminal पर वापस आएँ
पहले की तरह कंपाइल करें पहले की तरह निष्पादित करें
हाँ यह कार्य कर रहा है
अब हम समान program c ++ में निष्पादित करेंगे
अपने program पर वापस आएँ
मैं यहाँ कुछ बदलाव करूँगा
पहले अपने keyboard पर एक साथ shift ctrl और s कीज दबाएं
अब extension dot cpp के साथ फ़ाइल सेव करें और save पर click करें
iostream के रूप में header फ़ाइल बदलें
अब using statement को सम्मिलित करें
array का declaration और इनिशीलाइज़ेशन c ++ में समान ही है
इसलिए यहाँ कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है
अब printf statement को cout statement में बदलें
format specifier और back slash n डिलीट करें अब comma डिलीट करें और दो opening angle brackets type करें
यहाँ bracket डिलीट करें पुनः दो opening angle brackets type करें और double quotes में back slash n type करें
save पर click करें
निष्पादित करें terminal पर वापस आएँ
कंपाइल करने के लिए type करें g ++ space array dot cpp space hypen o space array1
यहाँ हमारे पास array 1 है क्योंकि array dot c फ़ाइल के लिए हम output parameter array को overwrite करना नहीं चाहते हैं
अब enter दबाएं
निष्पादित करने के लिए type करें dot slash array1 enter दबाएं
output प्रदर्शित होता है the sum is 15
हम देख सकते हैं कि यह हमारे c code के समान है
अब हम अन्य सामान्य error देखेंगे
अपने program पर वापस आएँ
मानिए कि यहां line संख्या 7 पर
मैं type करूंगा star 1 star 2 और star 3;
save पर click करें
निष्पादित करें अपने टर्मिनल पर वापस आएँ
prompt clear करें
पहले की तरह कंपाइल करें
पहले की तरह निष्पादित करें
हमे एक अनपेक्षित output मिलता है
यह इसलिए क्योंकि array index 0 से शुरू होता है
अपने program पर वापस आएँ come यहाँ देख सकते हैं array index 1 से शुरू होता है
इसलिए यह error let रहा है error fix करें
यहां type करें 01 और 2 save पर click करें
निष्पादित करें अपने terminal पर वापस आएँ
पहले की तरह कंपाइल करें पहले की तरह निष्पादित करें
हाँ यह कार्य कर रहा है
अब हम अपनी slides पर वापस जायेंगे
संक्षेप में
इस tutorial में हमने सीखा
अरैज
single dimensional array सिंगल डाइमेंशनल अरैज घोषित करना
single dimensional array single डाइमेंशनल arrays इनिशीलाइज करना
उदाहरण intstar 3 = {456}
array के elements जोड़ना उदाहरण sum is equal to star 0 plus star 1 plus star 2
नियतकार्य के रूप में
अरै में संचित एलिमेंट्स की भिन्नता की गणना करने के लिए एक प्रोग्राम लिखें
नीचे दिखाए गए link पर उपलब्ध video देखें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
spoken tutorial project team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
online test pass करने वालों को प्रमाणपत्र भी देते हैं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
यह स्क्रिप्ट लता द्वारा अनुवादित है आई आई टी मुंबई की ओर से मैं यश वोरा अब आपसे विदा लेता हूँ
धन्यवाद